पहाड़ों का दृश्य दिखाया गया हैं जहाँ पर सूर्य अस्त का समय दिखाया जा रहा हैं यहाँ पर हम--

अलग अलग अलग अलग प्रकार के कपड़े रखे गए हैं यहां पर हम फाइव मिनट टंगे हैंगर के थ्रू टंगे हुए बच्चों की फ्रॉक --

यहां पर एक महिला कुर्सी पे बैठ कर इन बच्चों को--

इस तस्वीर में हम राधा कृष्ण जी की एक भव्य मूर्ति देख सकते हैं जहां पर--

यहां पर एक बंदा ऑटो में एक पैर रखकर खड़ा है और एक व्यक्ति ऑटो में बैठा हुआ है।

एक व्हाइट बोर्ड भी दे सकते है जो सामने की तरफ लगा है।

यहां पर हम कुछ व्यक्ति यों को पैदल चलते हुए भी देख सक--

यह व्यक्ती होटल का मैनेजमेंट कर रहा है।